जिसपे एक दो पहिया वाहन है।

बहुत सारे दुकानों को भी देख पा रही हूं।

उसके बगल में मैं बहोत सारी डाक्यूमेंन्ट्स को भी देख पा रही हूँ।

बहोत सारी चीजे रखी गई है।